और कुछ औरतें अपने हाथ में पट्टे पकड़े हुए हैं।

इस फोटो में मुझे एक खेती नजर आ रहा है।

सामने एक लंबा सा ब्रिज भी दिख रहा है।

बिल्डिंग का गेट का रंग ब्राउन कलर का है।

यह तस्वीर में मुझे एक ब्रिज नजर आ रहा है ब्रिज के नीचे नदी भी दिख रहा है।

तीन इंसान बुक स्टोर के बाहर में खड़ा होकर है।

सीलिंग के ऊपर एक पंखा भी नजर आ रहा है।

यह तस्वीर मे मुझे एक बड़ा सा लेख नजर आ रहा है लेख के कोने में बहोत सारा पेड़ भी निकला हुआ है।

एक फ्रिज भी नजर आ रहा है।

बस के सामने बहोत सारा पेड़ भी निकला हुआ है।

थोड़ी सी दूर में बहोत सारा बिल्डिंग भी नजर आ रहा है।

यह फोटो में मुझे बहुत सारा वेस्टर्न टॉयलेट का टाइल्स दिख रहा है।

सामने में सफेद कलर का सिंक भी नजर आ रहा है।

दीवार में कुछ लाइट भी लगा हुआ है।

एक स्टैचू में सफेद कलर का कपड़ा पहना के रखा हुआ है।